और यहाँ पे बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग है और यहाँ आने --

और यहाँ पे एक हुक रखा हुआ है और और यहाँ--

यहाँ पे एक बहुत बड़ा ही स्कूल है और यहाँ पे डांस भी होता है।

यह एक बहुत बड़ा ही हॉल है जिसमें ढेर सारे आदमी लोग आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं.